जो की कम मजदूर है काम कर रहे हैं।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने पीछे बैग टंगा हुआ है।

यहां पर एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है।

वर्कआउट जो कर रहा है और यहाँ पे कुछ मशीने रखी हुई हैं एक्सरसाइज के लिए और --

यहां पर बहुत सारे कप टंगे हुए है और नीचे की तरफ रैक है जिसमे कुछ कप रखे भी हुए है।

और दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो की मोबाइल लिया हुआ है।

अरे एक आदमी और है जो कि खड़ा हुआ है।

यह एक ईमारत है और एक दो मंजिला ईमारत हैं।

और इस बिल्डिंग के सामने एक कुछ बाइक साइकिल खड़ी है एक कूड़ादान है वहां पर |

और एक दरवाजा लगा है खिड़की है।

इ-रिक्शा अ के पीछे पहिया लगा है जिसमे मयूरी लिखा हुआ है।

खंभा लगा है खंभे से कई तारे निकली हुई है।

पीछे की तरफ सफ़ेद रंग का पर्दा है ऊपर की तरफ यहाँ पेड़ लगा हुआ है।

और मूर्ति गदा मूर्ति गदा ली हुई है।

और कुछ घासे दिख र उगी हुई है।

जिसपे लिखा हुआ है ओम मैचिंग मंडल।

और महि महिला के सामने एक माइक है।

और उस माथे पर पीले रंग का और बड़ा-सा नारंगी रंग का टीका लगाया हुआ है।